बाहर एक साइकिल से बंदा गुज़र रहा है बाहर की और काफी ग्रीनरी है एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है।